और इनको भी कर रही और सफाई का यहां पर विशेष ध्यान रखा हुआ है।

और आगे भी बहोत सारी लड़की इन्हीं काम में लगे हुए--

पर पहाड़ मे बहोत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए है यहां की वादियां कुछ लोग यहां पर--

इन पहाड़ों को देखने के लिए आये हुए--

इस फोटो में मुझे बहुत सारे लकड़ दिख रहे जो कि एक लेंटर के नीचे लगाए हुए हैं।

जो की बहोत ही बड़ा लग रहा है।

जो की बहोत ही सुंदर दिख रहा है और जिम में जो लाइट्स लगाई है वो एकदम मस्त लगी हुई है।

इस फोटो में जो दिखाया गया है। वह एक बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है जिसमें कई भिन्न-भिन्न प्रकार की दुकानें खोली गई है।

और दुकानों में अलग अलग तरीको से लाइट्स लगाई गई हैं।

लड़की तो नीचे बैठी हुई है और लड़का खड़े हो कर फोटोस की ओर कैमरेस की ओर देख रहे।

और पतली सी गली के जो बीच में मुझे दिख रहा है वो एक--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

यहां पर भिन्न भिन्न प्रकारों के--

और जंगल की बात करते हैं यहा पर भिन्न प्रकार के पेड़ पर देखने को मिल रहे हैं और मौसम भी यहां का साफ दिख रहा है।

इस फोटो में जो मुझे दिख रहा है यहां पर मुझे बहोत बड़ा एक जंगल दिख रहा है।